जिसमें ब्राउन ब्राउन कलर की लाइंस बनी हुई है।

एक इमेज को देख रही हूं मैं जिसमें--

तीन वेसल्स को देख रही।

और बगल में यहां एक खड़ा हुआ है।

राष्ट्र शास्त्री स्कूल पब्लिक स्कूल --

और राइट साइड में ग्रीन कलर का एक स्टैंड --

मैं एक इमेज को देख रही हु जिसमें लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा ।

और दो लोग खड़े हैं यहां पे और साइड में कोई नहा रहा--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

एक अंकल व्हाइट कलर का शर्ट टी शर्ट लेकर

और बेंच के ऊपर पर्पल कलर का--

ग्रीन ग्रीन कलर का है। ये पौधे को काट के डिजाइन में बनाया गया है।